इस फोटो में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके बाहर बहोत सारे गाड़ियां खड़ी हुवी हैं।

यहाँ खम्बों में कई लग रही है आसपास बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ।

और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हुई है।

और वाइट मैट्रेस बिछी हुई है।

और एक डमी की फोटो है जो रेड कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है ।

नीचे हरा कलर का कारपेट बिछा है और पीछे लाल कलर का बैनर लगा हुआ है।

और ये अभी बंद है शटर दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे लोग हाथ मे बायबल लिए हुए खड़े हुए है।